वाहन के और पीछे कार भी खड़ी हुई है बहोत सारे खंबे लगे हैं जिनमें बिजली के तार है।

सामने बहोत सारे वाहन रखी हुईं है जिनमे मोटरसाइकल साइकिल और बहोत सारे व्यक्ति एकत्रित हैं जहां पे--

वो अपने सर पे सफेद रंग की कैप लगाया हुआ है।

दोनों वाहन सफ़ेद कलर के है आसपास बड़ा सा मैदान है जिसमे घास उगी हुई है चारों ओर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए है।

सामने मैदान है मैदान में बहोत सारे पेड़ लगे हुए है।

बीच में पानी भरा हुआ है वहां पे कुछ सामान भी रखा हुआ है।

और बहुत सारी अलमारियां हैं जिनमें सामान रखा हुआ है।

बैग रखा है अटैची रखी हुई है टेबल भी है और कुरसी भी रखी हुई है।

और स्केटिंग दीवारों पर बहोत सारे चित्र बने हुए हैं।

चारों ओर बहोत सारी लाइट जल रही है बहोत सारी कार है जो खड़ी हुई है।

सभी मेजों में बहोत सारी बच्चे है जो अभ्यास कर रहे हैं क्लास में बहोत बड़ा आईना लगा हुआ है।

सामने एक व्यक्ती है जहां पे बहोत सारे नल लगे हैं और व्यक्ति नल से पानी पी रहा है।

सामने छत है छत में बहोत सारे ऑरेंज कलर कुर्सियां लगी हुई है कुर्सियो के सामने टेबल है टेबल में बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

ऊपर की ओर बहोत सारे बिजली के तार है।

सामने एक होटल हैं होटल के बाहर कूड़े दान रखा हुआ हैं और वाहन भी रखा हुआ हैं।

और कुछ प्लास्टिक के भी रखें है एक व्यक्ति है जो बैठा हुआ है सामने की ओर देख रहा है दुकान के बाहर प्लास्टिक के पाइप रखे और कुछ बोरियां भी रखी हुई है।

सभी लड़कियां कुर्सी के ऊपर बैठी हुई हैं पीछे की ओर एक बोर्ड भी है जो सफेद कलर का है वहां पे एक और चेयर रखी जो काली कलर की है।